यहाँ पे एक कच्चा मिट्टी का ग्राउंड है दूर में पेड़-पौधे दिख रहा है खुला आसमान है और बहुत सारे लोग --

यहाँ पंखा घूम रहा हैं एक लड़का लड़की लोगो के पास हैं।

यहाँ पर एक बस दिखाई दे रहा हैं बस में एक दो आदमी बस के गेट पर सामने खड़े हैं दूर में और भी कुछ बस और ऑटो दिखाई दे रहा हैं।

ऊपर में आसमान दिखाई दे रहा हैं मिट्टी वाले ग्राउंड हैं दूर में पेड़ भी दिखाई दे रहा हैं।